और इसके बगल में एक ए.टी.एम. है और उसके बगल में एक और ए.टी.एम. है।

यह एक पहाड़ है बड़ा सा पहाड़ उससे पानी की निकल रहा है।

और गाड़ी लगे कुछ लोग रोड से जा रहे हैं |

यह चाहत कंप्यूटर जनरल स्टोर है यहाँ चीनी दाल चावल मसाले स्टडी का सामान मिलता है यहां आधार कार्ड प्रिंट होता है और यहाँ फोटो कॉपी लेमिनेशन होता है काफी छोटा-सा और अच्छा --